सामने एक पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

मैं एक कंपनी दिखाई दे रही हैं कंपनी बहोत ही बड़ी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर बहोत सारे फूल भी दिखाई दे रहे हैं।